सफेद कलर का बोर्ड है ।

मैं भी आते जाते रहूंगा।

ये फूल ही फूल है फूलों की दुकान है।

रेस्टोरेंट है दो चेअर रखी बाजू में एक टेबल है इधर में दो चेयर है फिर उसके पीछे दो चेयर है एक टेबल है फिर दो चेयर है।

बाजू में लाइट चल रहे हैं ऊपर में फूलों के गुलदस्ते लगे हुए पीछे में चेयर लगी हुई है।

चेयर लगी हुई है बफे टेबल लगे हुए हैं।

पांच सात गाड़ियां रखी हुई कार --

बाजु में मैदान है हरी भरी घास है।

आप लोग भी सुनिए बहुत अच्छे लोग हैं छह बेंजो रखे हुए है ।

ये सब्जी मार्केट है इसमें मिर्ची रखी है प्याज है।

चाय की टपरी में बहुत अच्छी चाय बनती है यहाँ पे आप लोग चाय पीने के लिए आइए।

यह हमारे गांव की बहुत फेमस दुकान है चाय की।